एक कटोरी जिसमे चटनी रखी हुई है तथा टेबल पर दो गिलास है दोनों गिलास स्टील का है।

सामने की ओर केला का पत्ता हरा कलर की है।

सामने की ओर एक नदी है जिसमें पानी है तथा बालू है।

सुभाष चंद्र बोस की है तथा भीमराव अंबेडकर की है।

सामने की और एक व्यक्ति है जो ब्लू कलर की टी शर्ट पहना हुआ है तथा हाफ पेंट पहना हुआ है।

सामने की ओर एक वृक्ष है।

लकड़ी का बॉक्स बनाई गई है जिसमें वस्तु रखी हुई है।

यह एक पेट्रोल पंप है सामने की ऑफिस के बाहर बहुत सारे बाइकें खड़ी है।

कुछ व्यक्ति व्हाइट कलर का कुर्ता तथा कुछ व्हाइट कलर के धोती पहना हुआ है।

ब्लैक कलर की स्लोब पर डिजाइन किया हुआ है जिसे पीला कलर द्वारा पेंट किया गया है।

कुछ व्यक्ति बैठे हुए है तथा कुछ व्यक्ति खड़े है कुछ व्यक्ति पीले कलर के वस्त्र पहने हुए है।

सामने की ओर एक व्यक्ति लाइट लेके खड़े हैं।

सामने की ओर एक घर भी है।

गुलुश्रेष्ठटर कैथेड्रल में एक दरवाजा भी है।

सामने की और बहुत सारे घास लगे हुए हैं।

यह एक मंदिर है जो भगवान शिव के हैं तथा सामने की ओर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं।

मंदिर में एक दरवाजा है जो रेड कलर की है।

सामने की ओर एक बाहर में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें सुमेरु गार्डन लिखा हुआ है।

सामने की ओर एक बोर्ड लगा हुआ है जो व्हाइट कलर की है।

मंदिर में एक दरवाजा भी है।

सामने की ओर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

सामने की ओर एक ए_सी भी लगी हुई है जो वाइट कलर की है।

सामने की ओर पिलर है जो ग्रीन कलर --

सामने की ओर सीढ़ियां बनी हुई है।

एक टीवी है सामने की और कुछ घर है।

ब्लैक कलर की है सामने की ओर पीतल का बर्तन रखा हुआ है।

यह एक आफिस है आफिस में चार व्यक्ति मौजूद हैं।

यह एक मेला है मेले में बहुत सारे व्यक्ति मौजूद हैं।

यह एक सड़क है सड़क के किनारे बहुत सारी बाईकें खड़ी है।

सामने की और टीन के माध्यम से छाया गया है।

सामने की ओर एक टैंक रखा हुआ है।

सामने की और कुछ टेबल रखे हुए हैं जो रेड कलर के हैं।

यह एक दुकान है दुकान के अंदर शीशे लगे हुए हैं।

उसके नीचे इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है।